सुनिए नाव सात सुनिए सात जहानाबाद का ये है।

नीचे बड़ी छोटी-छोटी छोटी मच्छी रखी हुई है ऊपर मे चार बल्ब बर रहे है दो आदमी खड़े है दुकानदार ।